अ और ये नीचे फल-फूल लगा हुआ है और इधर पीछे गेट बना हुआ है आने-जाने के लिए।

ये आदमी खड़ी है पीछे मंदिर है ऊपर भ अ आसमान ब्लू है अ फेर पीछे हरीयल कलर से है गाझ है मंदिलवा पर डिज़ाइन बनल है पीछे एक पोल है।

ये काली मंदिल का काली मंदिल है और आगे ध्व धाजा है और फिर यहाँ पे चोंगा है।

ब्रेंच है इ लड़कबा चैक वाला शर्ट पहनले हे जूता पेहनले है यहो चैक कलर चैक वाला शर्ट पेहनले है योह शर्ट पेहनले है एगो चैक कलर वाला शर्ट पेहनले है टी-शर्ट पेहनले है पीछे खिड़की है वाइट कलर कर के दीवाल है एक बुल्लू है उ जे --

घारा बनक रहा है जोन लाल कलर के टायर है जोन ब्लू कलर के टायर है जोन हाथो में कोट टांगले है लाल कलर के शर्ट पहनले जोन स्कॉर्पिओ लगयले हय।

ये एक कॉलेज है एकरा में जोन बाइक है चार पांच छेगो यहा लड़की प्रस टंगले हय पेहनले हय एगो दुकान है गुमटी जैसन --